ये एक स्कूल है यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए है जो की कुछ प्रोजेक्ट बना रहे है उनके पास में एक मेम खड़ी हुई है।

यह एक बैंक है इसके बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पास में एक पेड़ है यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है तीन लड़कियाँ उन सीढ़ी पे बैठी हुई है।

राधे कृष्ण के ऊपर फूलो का मालाये पहनाई गयी है हाथ में मुरली है माथे पर एक मुकुट लगा हुआ है।

साइड में एक शटर लगा हुआ है जिसका रंग पीला है साइड में एक बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है।

इसके बाद फिर धुवा निकल रहा है।

भैया खड़े हुए है जिन्होंने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

सूट है जो की टंगे हुए हैं उनके साथ चुन्नी भी टंगी हुई है सामने एक मंदिर है यहाँ पे भगवान जी की तस्वीर है लगी हुई है। दो पोस्टर भी लगे हुए है।

ऊपर बिल्डिंग में भी पोस्टर लगे हुए है। नीचे एक कार हुई है। उसके आगे एक लड़की खड़ी हुई है। पास ही में एक --

उसके पास में एक दो मंजिला घर है।

दिबार पे कुछ पोस्टर और छपे हुए है एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है जिसका हाथ दिखाई दे रहा है ऊपर छते है।

बुक्स रखी हुई है हर काउंटर पे अपना -अपना एक ही स्वच्छ है ऊपर पंखे और लाइट लगी हुई है।

यह एक मेला है यहाँ पे बहुत सारे लाइटे लगी हुई है बहोत सारे झूले है एक झूले--

ये एक नदी है यहाँ पे बहुत सारी बोर्ट रखी हुई है सामने एक पहाड़ टाइप का दिखाई दे रहा है पेड़ -पौधे दिखाई दे रहै है।

यह एक स्टेडियम है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहै है स्टेडियम के पास में --